और दीवार पे फोटो लगी --

इस तस्वीर में एक झील का दृश्य दिखाया गया है। झील बोहोत दूर तक फैली है।